देखो ये डस्टबिन है। कितनी कलर कितना प्यारा है इसका उम्म रेड उम्म हरा कलर है।

फुव्वारा कितना बड़ा है ये।

यहाँ पे घूमने में बहोत अच्छा लगता है।

तुम लोग भी ले लो यार बहुत ही अच्छा है मतलब इतना सब कुछ इतना बढ़िया है कलर देख कितना प्यारा कलर --

स्टूडियो है यहाँ पे सिम मिलते हैं।

ब्यूटी पार्लर है।

और देखिए खुरसी कितनी सारी पड़ी हुई है वाइट कलर की है कितनी रोशनी लाइट कितनी अच्छी-अच्छी है यहाँ पे।

देखो सामने बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है।

ये ये थोडा खंडर टाइप का लग रहा है।

इतना बड़ा ग्राउंड है देखो यहाँ पे बाल वगैरह खेलते हैं।

देखो कितने इतनी अच्छे डेकोरेट किया है यहाँ पे कितने सबको कितना अच्छा लग रहा है और देखो ये पर्दों के कलर भी कितने प्यारे प्यारे हैं।

और बहुत अच्छा है देखो कितना अच्छा लग रहा है।

ये यहाँ पे मिट्टी का खेत है देखो कितना अच्छा है यहाँ पे जेसीबी चल रही है।

और ये ग्रीन कलर का जेसीबी का कलर कितना प्यारा लग रहा है बहुत अच्छा।

और स्केल वगैरह चाहिए थी इसलिए मैं आई थी।

हमने ये गाड़ी बुक की थी। देखो गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है। कितनी अच्छे से डेकोरेट की है। देखो यहाँ पर कितने प्यारे-प्यारे कलर के फूल लगाये हुए है कितनी सुन्दर लग रही है न गाड़ी।

हमारा घर है यहाँ पे हम रहते हैं।

ये हमारा गेट है देखो गेट का हमारे कितना कलर प्यारा लग रहा है। बहुत --

अभी बन रहा है। काम चल रहा है प्रोमो --

ओ यार देखना यार कि यहाँ पे कितनी अच्छी मूर्ति लग रही है ना कितने अलग-अलग तरीके के बैठे हुए हैं लेके।

होटल है। यहाँ पर स्टेज है यहाँ पर जयमाला वेय डली थी। शादी हुई थी। दीदी की तो यहाँ जयमाला डली थी।

कितने अच्छे से डेकोरेट किया यहाँ पे ये कलर कितना अच्छा लग रहा है।

अच्छे-अच्छे फूल लगा रखे हैं इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट --

तालाब है उसके ऊपर बना हुआ है देखो कितना और --